ये एक बहोत ही ज्यादा गांव का प्राचीन मंदिर दिख रहा है यहां पर सूर्य पैनल वाली लाइट भी लगी हुई है।

एक भैया ने व्हाइट कलर का टॉवल पहन रखा है और एक भैया ने येलो कलर का कच्छा पहन रखा है।

काउंटर पे बहुत सारा सामान है और एक ग्रीन कलर की बॉटल भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

इनके खाना खाने के लिए रेड कलर का यहां पे बॉक्स भी लगा हुआ है।

यहां पे एक रॉयल एनफील्ड की बाइक है जिसकी सीट पर एक हेलमेट भी रखा हुआ है।

शॉपकीपर ने पानी का पाइप पकड़ रखा है और उसके जस्ट सामने एक बाल्टी भी रखी हुई है।

ये एक ट्रैक्टर शोरूम है यहां पर पीछे की तरफ चार ट्रैक्टर खड़े हुए हैं।

ये एक मारुति सुजुकी की गाड़ी है जो सिल्वर कलर में है।

यहां पर एक इवेंट चल रहा है और उसको सुनने के लिए बहुत सारी लड़कियां और बालिकाएं बैठी हुई है।

और कुछ ऑरेंज कलर की यहां पे चेयर भी पड़ी हुई हैं।

तीनों लोगों ने सारे व्हाइट कलर के कपड़े पहन रखे हैं।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

पूरा रेस्टोरेंट रेड और व्हाइट कलर के बलून से सजा हुआ है।

ये एक रोज की इमेज है जहां पर बहोत सारे रेड कलर के रोजेज हैं।

ये एक नदी का दृश्य है जहाँ पर एक व्यक्ति नाव चला रहा है।

ये एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाली मशीन है जिसका नाम दशमेश सेवन हंड्रेड इलेवन सुपर सीटर है।

पीछे की साइड में ब्लैक कलर में प्लेटिना खड़ी हुई है और आगे की तरफ ब्लैक कलर और रेड कलर में पल्सर खड़ी हुई है।

एक बैनर है जिसमें ब्रेड कलर की प्लेटिना खड़ी हुई हैं।

ये एक राठौर गार्डेन नाम का हॉल है यहां पर आधी गाड़ी दिखाई दे रही है।

एंड यहां पे फ्रंट में एक बैठने के लिए चेयर भी है ब्लैक कलर की।

इस वॉलपेपर में योर सर्विसेज में बहुत सारी सर्विसेज लिखी हुई हैं और नीचे की तरफ कॉल नंबर भी दे रखे हैं।